दुकान है जिसका इनौगुरेसन है। साइड में पानी की टंकी है। नल रखा हुआ है । ब्लू कलर की बोटल्स रखी हुई हैं ।

लड़की है उसके बालों पे गोल गोल राउंड बने हुए किलिप लगे हुए हैं। रेड कलर की चुटकी ने हैं। तीन चार राउंड बने हुए हैं फूल बने हैं। उसके सर नीचे के बाल खुले हुए हैं।

एक बड़ा-सा चर्च चर्च में बैठे हुए है बहुत सारे लाइन से फादर बैठे हुए हैं ।गोल्डन और रेड कलर के एप्रिन पहने हुए हैं और ऊपर से एक पीछे की तरफ बीच बैठे हुए है फादर उनके पिंक कलर के पहने हुए हैं। पीछे बच्चे खड़े हुए हैं |

गेट लगा हुआ है। एक मैहरून कलर का बीच में से जाली बनी हुई है। साइड में पेड़ लगे हुए हैं। वेग पीछे की साइड भी बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और बड़ा सा बंगला बना हुआ है बंगले के --